उ शीशा भी है | इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लगा हुआ है |

बगल में स्कूटी पे एक आदमी है और हरा-भरा पेड़-पौधा दिख रहा है।

यहाँ पे ट्रैक दिख रहा है ट्रैन मालगाड़ी है --

जे.एम.डी. इंटरनेशनल लिखा हुआ है।

शहर टाइप का घर है।

और नीचे यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया है यूनियन बैंक --

स्वेटर पहना हुआ है हाथ मे कुछ सामान लिया हुआ है --